और बहोत हरियाली है पीछे मकान है और बगल में हरियाली है और पेड़-पौधे हैं और यहां कुछ कुर्सियां टूटी-फूटी पड़ी हैं।